वहां पर एक टेडी बियर का झूला नजर आ रहा है।

पार्लर का नाम ए_वन एन_जे_बी लिखा हुआ है।

यह तस्वीर के_के फर्नीचर नाम की एक दुकान की है।

बैनर पर वहां पर मिलने वाली चीजों के बारे में लिखा हुआ है।

पीछे दो औरतें बैठी है और तीन खड़ी है।

यह तस्वीर में सफेद रंग की एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

आश्रम के सामने एक कमरा बना हुआ है।

यह तस्वीर एक मस्जिद की नजर आ रही है जिसके आसपास दो दुकाने हैं।

स्नैक बार के बाहर दो आदमी हैं।

कार्यालय के बाहर दो कारे खड़ी हुई है।

यह तस्वीर एक ऐसी जगह की है जहां पर चारों तरफ सीमेंट के बने हुए बर्तन पड़े हुए हैं।

यहां पर चारों तरफ लाइटें नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर किसी महात्मा बुद्ध के मंदिर की है।

इसमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति नजर आ रही है।

पोल्ट्री फारम पर शेड डाले हुए है और रेलिंग भी लगी हुई है।

यह तस्वीर किसी खेल के मैदान की है जहां पर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।

जिसपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है।

इसकी बाहरी दीवार पर हो जू बाई भले पधारे जू बहोत सुंदर शब्द लिखें हुए हैं।

शादी वाले घर के प्रमुख दरवाजे पर फूलों से सजावट की गई है।

और उपर की तरफ भी रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही है।